ऊपर लाइट दिखाई दे रही है। वाइट कलर --

दूकान बोहोत बड़ी दिखाई दे रही है।

ये है वो वाइट कलर की शर्ट पहने हुए है।

यही की गाजर मुली ऐसा कुछ नजर आ रहा है।

पे दो बोतलें रखी हुई हैं।

और एक गेट में से बस दिखाई दे रही है।